यहाँ पर घर लग रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

यह वो आ मंदिर है और--

यहाँ पर गड्ढा दिखाई दे रहा है इधर दिखाई दे रहा है कराकट दिखाई दे रहा है और टायर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर गड्ढा दिखाई दे रहा है और करा कर दिखाई दे रहा है और लोहा लंकर--

समान दिखाई दे रहा है और सिरका दिखाई दे रहा है और खिड़की दिखाई दे रहे करा कर दिखाई दे रहे हैं।

और खिड़कीदरवाजा दिख रहा हैं और ज़मीन दिख रहा हैं।